इस फोटो में हम एक इंसान को देख सकते है जो की बैठा है।

इस फोटो में हम एक ब्रिज देख सकते हैं।

यह बिल्डिंग फिलहाल बन ही रहा है।

बिल्डिंग के पीछे हम काफी सारे बास के पेड़ भी देख सकते हैं।

कुछ लाइटिंग्स ब्लू कलर की है तो कुछ लाइटिंग ग्रीन कलर की।

कुछ पोल भी दिखाई दे रहे हैं।

और यह वक्त रात का समय है।

यह फोटो टाइल्स के दुकान का है।

यहां पर बारिश के वजह से रास्ते पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है।

एक मुर्गा काले कलर का है इसका गला पीले कलर का है।

पीछे ऑरेंज कलर के बैलूंस और वाइट कलर के बैलूंस और ग्रीन कलर के बैलूंस लगे हुए हैं।

इस फोटो के अपोजिट साइड में कुछ जंगल सा है छोटे छोटे घर भी हैं।

रूम के दरवाजे की तरफ एक गेट लगा हुआ है।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

यह फोटो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का है।

ये होटल पीले कलर का बना हुआ है।

होटल के पीछे बहोत दूर हम पहाड़ भी देख सकते है।

सामने टेबल भी है टेबल के ऊपर कुछ कैन रखे हुए हैं।

इस होटल का नीचे का फ्लोर वुडन से बना हुआ है।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

यहां पर एक नीले कलर का एक घर बना हुआ है।

यहां पर हम कुछ कपड़े तांगडे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे सफेद कलर के चेयर्स भी है साइड में एक टेबल फैन भी है।

के सामने एक एक माइक भी है।

आसमान काफी बादलों से भरा पड़ा है।

इस फोटो में एक रास्ते को दिखाया गया है।

यहा पर पेट्रोल लेने के लिए काफी लंबी लाइन हैं।